सिल्वर कलर का बहुत सारे कार्टून में बहुत सारी चीज रखे हुए हैं।

और आगे में ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा है।

और इसके अंदर एक ऐ.सी. भी पिछे लगा हुआ है और साइड में दो खिड़कियां भी हैं।

और अंदर का गेट भी हरे कलर का है।

जिसके जिसने सूरज भगवान को के रखा है और पीछे में असमान काफी बढ़िया दिख रहा है।

जो कि येलो कलर का पेंट किया हुआ है और ऊपर में टिन का शेड डला हुआ है।

और पीछे के साइड में बाउंड्री हैं जोकि येलो कलर से पेंटेड है और उसके बीच-बीच में रेड कलर से भी पेंट किया हुआ है।

और पीछे में पूरा अंधेर-अंधेर है।

और आगे में एक जनरेटर रखा हुआ है बहुत बड़ा-सा जिसको बोलते हैं उसके उस पर भी आकाश लिखा हुआ है।

जो कि काले कलर की चेयर पे बैठे हैं और इन्होंने कुछ आर्डर किया है।

यहां पर काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सामने में एक रेड कलर की शर्ट पहनकर सर पढ़ा रहे।

और अंदर में भी बहोत सारे कपड़े दिख रहे हैं।

और बगल में भोत सारे डंबल रखे हुए हैं।

और पीछे में वाइट कलर का घर दिख रहा है।

सामने में एक आदमी फोटो क्लिक करवा रहा है।

और पीछे में दीवाल का कलर येलो है और पीछे से असमान भी दिख रहा है और साइड में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।